ये एक डांस क्लासेस हो रही है यहां पे और काफी बच्चे हैं लडकियां हैं लड़के हैं जो की ब्लू कलर की ड्रेस में है।

काफी बड़ा पुल है जिसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं। नीचे पिलर लगे हैं नीचे नदी है गंगा है सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं धुपबत्ती ले रहे हैं नहा-नहा के प्राथना कर रहे हैं।

है जो कि नाव टाइप में बठे हैं। पीछे समुन्द्र है जैसे नदी है काफी बड़ी नदी है।

ये पीछे का जो है वो सारा ग्रीन दिख रहा है। नीचे भी नेट लगी हुई बिछी हुई है। ये तीनों ये सारे के सारे लड़के साथ जने खड़े हुए हैं।